जो उस सोए हुए व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं।

यह चित्र में हमे पाँच मूर्ति नज़र आ रही है।

इशू का मूर्ति दिवार पे लटके हुए दिख रहा है।

जो की बहोत ही सुन्दर तरीके से सजाया हुआ है।

यहां चित्र में हमे एक दुकान देखने मिल रहा है।

उसके थोड़े ही दूर में हमे बहोत ही बड़ा घना-सा जंगल देखने मिल रहा है।

यहाँ चित्र में हमें एक मैदान दिख रहा है।

थोड़े ही सामने हमे द्वार दिख रहा है।

बीचो-बीच हमे एक ऑटो रिक्शा खड़ी दिख रही है जिसके आस-पास हमे बहोत सारे व्यक्ति दिख रहे है।

यह चित्र में हमें एक कक्ष नजर आ रहा है।

समर्पण केरियर पॉइंट लिखा हुआ है।

थोड़े ही दूर देखने से हमे बहोत ही ऊचे-ऊचे पहाड़े नज़र आ रही है।

यह चित्र में हमे एक मंदिर के अंदर का दृश्य देखने मिल रहा है।

ईट के खम्बे नजर आ रहे है।

यहाँ चित्र में हमें बहुत सारे व्यक्ति नज़र आ रहे हैं।